ब्रिज के ऊपर लाइट के खंबे लगे हुए हैं।

कुछ स्कूल या क्लासेस दिख रहे हैं जिस में बाहर गेट के बाहर अह टू व्हीलर खड़ी है।

कार्बन का ड्रॉइंग बनाए हुए दिखाई दे रही है और हॉल के अंदर दो पेड़ दिखाई दे रहे है और तीन कुंडिया है उसमे एक कुंडी खाली पड़ी हुई है।

नारियल के कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

येलो कलर का एक पोस्ट ऑफिस का बोर्ड लगा है।

यहां पे बिल्डिंग बनाने का काम चालू है।

जिम के अंदर बहुत सारा कार्डियो का सामान रखा हुआ है उसमें बहुत सारे सामान का कलर ब्लैक है।

सामान का कलर रेड दिख रहा है।

तीन आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये फूलों के माला बने हुए स्टॉल दिखाई दे रहा हैं वहां पे अलग अलग फूलों के अलग अलग माला बनाया है।

यहां पे रेड कलर की माला है।

तालाब के आजु बाजु में लोग दिखाई दे रहे हैं।

व्हाइट कलर के बोर्ड दिखाई दे रहे हैं।

कुछ छोटे मोटे शॉप भी दिखाई दे रहे हैं।

रूम के सामने एक आदमी खड़ा है।

ये एक कपड़े का दुकान है।

चार सीढ़ियां दिख रही हैं अलग अलग।

यहां पे बहुत बड़ी भीड़ दिख रही है।

टेबल है फर्नीचर का बनाया हुआ ये है।

एक बहुत बड़ा तालाब दिख रहा है।

हरे कलर की एक साइड पे हरे कलर की जल है तो दूसरी तरफ पहाड़ दिखाई दे रहा है।

बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग में हर एक गैलरी में हरे कलर के कुछ पेड़ लगाए हुए।

हॉस्पिटल या बैंक ऐसा कुछ दिख रहा है।

यहां पे दो लेडीज बैठी हुई है।

चेयर और कपबोर्ड दोनों भी लकड़ी का है।

चेयर पे अलग अलग कलर के डिजाइन बनाए हुए हैं।

यह एक कार का शोरूम है।

इसमें हरे कलर का गोद भी बिछाया हुआ है और आजू बाजू से लोहे से कंपाउंड बनाया हुआ है।

आजू बाजू में हरे कलर के पेड़ है।

बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे है।

बिल्डिंग के सामने दो लेडिस खड़ी हुई है।

तालाब के आजू बाजू में हरे कलर के बहुत अलग अलग पेड़ लगाए हुए हैं।

दो लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं।

हिमागिरी हॉस्पिटल का रिसेप्शन है।

रिसेप्शन के काउंटर पे दो लोग खड़े हैं।

कुछ ब्रांचेस का कलर हरा है पीला है।

ये एक बड़ा ग्राउंड है।

ये एक मच्छी मार्केट है।

अलग अलग और अलग अलग तरह की बहुत सारी मच्छिया दिख रही है और कुछ कैरेट्स भी दिख रहा है और बॉक्सेस भी दिख रहे हैं थरमस के।

अलग अलग हार रखे हुए है।

ये एक बहुत बड़ा हाल है।

हॉल के सीलिंग व्हाइट कलर की है।

ये एक गैरेज दिखाई दे रहा है।

के बाजू में बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पे एक जिम दिखाई दे रही है।

और एक लड़का बाजू मे खड़ा है।

गैरेज के अंदर दो लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक स्टोर दिखाई दे रहा है अर्जेंट डेजर्ट का।

सीलिंग में रेड कलर की पाइप भी बिछाई हुई है।